यह तस्वीर में हमें एक मनिहारी की दुकान दिखाई--

रोड का दृश्य दिखाई दे रहा है रोड में हमें एक--

जगह से जे_सी_बी से मिट्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है।

रोड में हमें बहुत सारे लोग--

सामने कुछ झूले लगे हुए नजर आ रहे हैं।

फंक्शन दिखाई दे रहा है।

हमें बहुत सारी भीड़ लगी हुई नजर आ--

सारे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं फ्रूट का नाम लीची है।

इस तस्वीर में हमें एक ऐनक--

जहां हमे एक हाथी चलता हुआ--

हमें बहुत सारे लोग योगा करते हुए नजर आ--

यहां हमें अलग अलग तरह की सीनरी दिखाई दे रही--

हमें बहुत सारे अलग अलग--

की कार का दृश्य दिखाई दे रहा--